यहाँ पर एक कॉलेज दिखाई दे रहा दिखाई दिया जा रहा है जहाँ पर लाल रंग के गेट लाल और सफ़ेद रंग के गेट लगे हुए हैं और कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं और दो लड़के जा रहे हैं और गे और ह हरे कलर के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जहां पर ऊपर ब्लैक कलर का बोर्ड है जिसपे लिखा है नेचुरल फिटनेश और एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा है जहाँ पे टाटा मोटर्स लिखा है।

और यहां पे एक आदमी बात कर रहा है फ़ोन पे और बहोत सारी लाइट लगी हुई है और बहोत सरे पर्दा हुए लगे हुए है और कुर्सी भी रखी हुयी है और बहोत सारे तार भी दिखाई दे रहे है इसमें और बादल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर दिखाई दे रही है दि दी जा रही है और बोहोत ही अच्छा अम सजा हुआ है। घर बेब रेड बैलून से सजा हुआ है और--

येह दुकान दु-दे-दुखाइ दिखाई जा रही हैं जहा येह मेडिकल हैं। और बगल से ब्लू बगल से ब्लू कलर का ब-ब- ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं।

पैड खड़े हुए है बोहोत सारे औ बॉस म पीछे बिल्डिंग दिखाई दी जा रही हैं। पैड लगे हुए हैं।

यह कपड़ों की शॉप है जहां पे बहुत सारी कुर्तियां टंगी हुई है ब्लू रंग की रेड रंग की और काली नीली हरी सब रंग की द--

यहां पे बहुत सजावट है | यह एक शॉप है जिस जो की अभी न्यू ओपन हुई है और एक यहाँ पे बोर्ड भी रखे हुए हैं जहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है | बहुत लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे और--

तीन लड़कियां भी है और एक ग्रीन और डस्टबीन रखा हुआ है और पैड़ भी लागी हुई लाइट भी लागी हुई।

पे रोड दिखाई दे रही है और एक गेट बड़ा सा गेट दिखाई दिया जा रहा है जो की सफेद लाल रंग से पुता हुआ है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और रेलिंग लगी हुई है।

सारा पानी बेह रहा है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी है एक टैंकर हैं जो की नीले कलर से का हैं और दो खंबे लगे हुए हैं और बहोत घास फूस हैं यहां पे।